इसमें बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है हरे कलर के है दो और बिल्डिंग के अंदर भी पेड़ लगे हुए है बिल्डिंग है बड़ी सी।

इस इमेजेस मे हम देख कर बता सकते है की नीचे की तरफ घास नजर आ रहा है छोटा-छोटा ओ नीचे से सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर स्टेज पे कुछ लड़कियाँ नृत्य कर रही है डांस कर रही है।

इस इमेजइस में हम देख रहे है की यहा पे कुछ सोप वगेरा है अ जहा पे शायद मिठाई की शॉप है।

है या किसी कोल्ड डिंग वगेरा ब-बने हुए हैं बाहार दीवाल पर तो शायद कोइ कैफे वगेरा है यहा पे लाईटें भी जल रही है और कांच की काच भी लगे हैं।